यहाँ पे बहुत सारे नाव चलती है। बहुत स पानी है इस नदी में।

यह मेला काफ़ी बड़ा है।

ये तालाब काफ़ी गहरा है | यहाँ पे लोग मछली पालन करते है | तालाब के पानी से लोग सिचांई करते है ।